टाइल्स बिछा हुआ है प्रिंटर मशीन है।

मेईन मार्केट है.

कंप्यूटर है कुर्सी है

जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है एक है.

एक पोस एक पोस्टर भी सटा हुआ हे.

बादल बादल दिख रहा है मौसम साफ दिख रहा है.

कलम है खिड़की है दरवाजा है.

फर्नीचर की दुकान है गाड़ी है फोर व्हीलर है.

जिसमें दो ताला म तीन ताला मकान दिख रहा है.

लकड़ी का डिजाइनदार सोफा लगा हुआ है .]

आई_सी_यू का व्यवस्था है जिसमें दवा दिख रहा है.

पम्प है पम्प है मछली है बड़ा मछली है छोटा मछली है.

रोड है मेंन रोड पर बहुत सारे लोग हैं।

जिसमें एक माथा पर हाथ रखा हुआ है एक बच्चा दो बच्चा खड़ा हैं.

जिसमें हीरो रेंजर साइकिल है नया-नया साइकिल लगे हुए हैं.

दू एक रूम है अं --

इसमें झंडा खड़ा-खड़ा डंडा पर झंडा लटकाया हुआ है इधर दुकान है.

और सभी लोग फील्ड में खेल रहे हैं.

जिसमें दो-तीन आदमी बैठे हुए हैं एक मास्क लगाया हैं.

बुलु कलर का दरवाजा हे.

कोट पहना हुआ है मास्क लगाया हुआ है।

काम होल काम लगा हुआ है मिट्टी गिरल है.

फोर व्हीलर है फोर व्हीलर बनाने वाले दिख रहे हैं.

महजीद है जिसमें महजीद है जिसमे रुख है.

डिजाइन डाला हुआ है ब्लैक बोर्ड है।

दो टेंपू है दोनो टेंपू रुका हुआ है. दो